एक मूर्ति है और मस्त जगह है फुल और लाईट लगा हुआ है एक मुर्ति में बैठा है अ_सो है और अगल-बगल दिख रहा है मस्त

--और आदमी और बहुत बड़ा है और अगल बगल हरा भरा दिख रहा है और आदमी भी है।

और बहुत बड़ा बि बिल्डिंग है अ और मिस्त मिस्त्री लोग काम कर रहा है पोस्टर भी है और बहुत लोहा टीना भी दिख रहा है आ--

और आदमी भी हैं और और घर बना रहा हैं।

घर दो मंजिल का है उसमें खिड़की - खिड़की भी डूब - डूब जा रहा है पोस्टर भी फुआ रहा है।